यहां पर कुछ नाव रखे हुए हैं जिनमें कुछ सामान ढोकर उस पार से इस पार लाया गया है।

तस्वीर में सामने बैठे कुछ व्यक्ति एक व्यक्ति ने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है तथा एक व्यक्ति कुछ सामान उतारने में व्यस्त नजर आ रहा है।

कार्यालय के द्वारा के ऊपर बोर्ड में कार्यालय का नाम लिखा हुआ है।

मंदिर के चारों ओर पेड़-पौधे लगे हुए हैं तथा धूप निकली हुई है जिससे यह मालूम पड़ता है कि तस्वीर दिन में ली गई है।

ताकि वाहनों का संचालन सुचारु रूप से हो सके।

मन्दिर के ऊपरी भाग का रंग सफेद नजर आ रहा है।

द्वार पर कुछ स्कूटी और बाइक रखे हुए हैं तथा एक व्यक्ति बैंक के अंदर जाते हुए दिख रहा है।

जिसके निचले भाग को सफेद रंग से पेंट किया गया है तथा ऊपरी भाग नीले रंग का देखा जा सकता है।

यह तस्वीर एक फर्नीचर के दुकान के अंदर की तस्वीर मालूम पड़ती है।

तस्वीर में कई अलमारियां नजर आ रही है जो कि एक शोरूम में रखी हुई हैं।

प्रवेश द्वार व खिड़कियां धनुषा आकार में नजर आ रही है।

लाल पीला एवं हरे रंग का छल्ला पानी में लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

पानी के फव्वारे छल्लों के बीच से गुजर रहे हैं।

तस्वीर की रोशनी बता रही है कि यह दिन में लिया गया फोटो है।

परिसर में कुछ लोग मौजूद हैं जो अपने बैंक के कामों के लिए उपस्थित हैं।

दीवार का रंग नीला तथा फर्श का रंग हल्का भूरा नजर आ रहा है।

तस्वीर में पीछे ईसा मसीह की मूर्ति देखी जा सकती है तथा प्लस का साइन भी देखा जा सकता है।

ढ़ाबे का नाम डीलक्स ढ़ाबा नजर आ रहा है जो कि ढ़ाबे के द्वार के ऊपर लगे लाल बोर्ड में पीले अक्षरों में लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यह तस्वीर किसी फूलों के दुकान की मालूम पड़ती है।

छत पर कुछ लाइटें नजर आ रही है तथा नीले रंग की पट्टी पर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यह तस्वीर किसी अधूरे बने इमारत की लग रही है।

दीवारों का रंग पीला तथा सीलिंग का रंग सफेद नजर आ रहा है।

यह तस्वीर किसी बैटरी के दुकान की नजर आ रही है।

कंपनी का नाम बैटरी के डब्बे पर साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

तस्वीर में एक पेड़ देखा जा सकता है जिसके पीछे एक दुकान खुली हुई है और वहां से रोशनी आ रही है।

तथा दुकान का नाम द्वारा के ऊपर लगे बोर्ड में लाल अक्षरों में लिखा हुआ है।

तस्वीर में ढेर सारा सामान देखा जा सकता है जो कि कुत्तों से संबंधित है।

एक हाथी बड़ा तथा एक हाथी छोटा दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में पटाखे और आतिशबाजी का प्रदर्शन हो रहा है।

में नीले रंग की स्टील तथा कंक्रीट का इस्तेमाल किया हुआ है।

तथा सीलिंग पर एक पंखा और कुछ लाइटें नजर आ रही है।

सीढ़ियों के किनारे स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगी हुई है।